जो कि सामने गाडी और एक मॅकेनिक गाडि को ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है।

यह चित्र कीसी बैकरी का है जो के सामने बेकरी है बाहर कुछ मेज और कुर्सी रख्खी नजर आ रही है सड़क के आस-पास पैड-पौधे भी नजर आ रहे है।